ruby मेथड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
मेथड क्या है
मेथड के लिए रचनाक्रम और
हम कुछ उदाहरण देखेंगे
यहाँ हमने उबन्टु लिनक्स वर्जन 1204 ruby 193 का उपयोग किया हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए हमें लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है
अब मेथड्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं
मेथड एक पृथक प्रोग्राम है जो विशेष कार्य का निष्पादन करता है
ruby मेथड अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में फंक्शन्स के बहुत समान है
मेथड नेम लोअरकेस लेटर से शुरू होना चाहिए
मेथड्स को उनकी कालिंग से पहले ही परिभाषित करना चाहिए
मेथड के लिए रचनाक्रम को देखते हैं
मेथड्स को परिभाषित करने के लिए कीवर्ड def के बाद मेथड का नाम लिखें
आर्ग्यूमेंट्स मेथड्स को संसाधित करने के लिए दी गयी वैल्यूज को दर्शाता है
ruby कोड सेक्शन मेथड को बनाने वाले ढाँचे को दर्शाता है
मेथड के ढाँचे को ऊपर से इस परिभाषा और नीचे से वर्ड end के द्वारा पृथक किया जाता है
यह आर्गुमेंट के साथ मेथड कहलाता है
मेथड के लिए अन्य रचनाक्रम है
कीवर्ड def के बाद मेथड का नाम और रिक्त आर्गुमेंट लिस्ट
ruby कोड सेक्शन जो मेथड के ढाँचे को दर्शाता है
और वर्ड एन्ड end जो मेथड के अंत को चिन्हित करता है
यह आर्गुमेंट से रहित मेथड कहलाता है
देखते हैं कि मेथड का उपयोग कैसे करें
मैंने एक प्रोग्राम gedit एडिटर में पहले ही टाइप कर लिया है
इसे खोलते हैं
ध्यान दें हमारी फाइल का नाम है method hypen without hypen argument dot rb
मैंने फाइल को ruby program फोल्डर में सेव किया है
इस प्रोग्राम में हम मेथड का उपयोग करके दो नंबर्स के जोड़ का आंकलन करेंगे
प्रोग्राम को अच्छी तरह देखें
यहाँ हमने एक ग्लोबल वेरिएबल a घोषित किया है
और हमने इसकी वैल्यू 5 निर्धारित करके इसको आरम्भ किया
ग्लोबल वेरिएबल नेम्स से पहले dollar sign $ लगाएं
ruby प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल की घोषणा के स्थान के अलावा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं
यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट्स से रहित एक मेथड add घोषित किया
यहाँ हम यूजर से दूसरा नंबर एंटर करने को कहते हैं
यूजर वैल्यू एंटर करेगा
गेट्स मेथड gets method स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंसोल से इनपुट प्राप्त करता है
हमें to_i मेथड उपयोग करके इसको इन्टिजर integer में बदलना ज़रूरी है
बदली हुई वैल्यू फिर वेरिएबल b में संचित होती है b लोकल वेरिएबल है
यह केवल उस मेथड में उपलब्ध है जिसमें यह घोषित हुआ है
यहाँ हम ग्लोबल वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यूज को जोड़ते हैं
उसके बाद परिणाम वेरिएबल सम sum में संचित हो जाता है
अब हम sum प्रिंट करते हैं
यह स्ट्रिंग में वेरिएबल प्रविष्ट करने का तरीका दर्शाता है
इस सम का कंटेंट स्ट्रिंग की तरह प्रवेश करता है और आउटर स्ट्रिंग में जगह लेता है
एंड end मेथड के अंत को दर्शाता है
यहाँ दो तरह के मेथड हैं
यूजरडिफाइंड userdefined मेथड जो हमारा add मेथड है
प्रीडिफाइंड predefined मेथड जो है print gets और to_i मेथड
यहाँ हम ऐड मेथड को कॉल करते हैं
एडिशन ऑपरेशन किया जायेगा और परिणाम प्रिंट होगा
अब सेव बटन पर क्लिक करें
यह प्रोग्राम ruby program फोल्डर में सेव होगा जैसा पहले बताया है
अब प्रोग्राम का निष्पादन करें
एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो दिखती है
प्रोग्राम निष्पादन के लिए हमें सबडाइरेक्टरी ruby program में जाना है
टाइप करें cd space desktop/rubyprogram और एंटर दबाएं
टाइप करें ruby space method hypen without hypen argument dot rb और एंटर दबाएं
enter the second number प्रदर्शित होता है
मैं 4 वैल्यू एंटर करुँगी टाइप 4 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट मिलता है sum of two numbers 5 & 4 is 9
अब हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ मेथड का एक उदहारण देखते हैं
हम इस प्रोग्राम को पहले ही gedit एडिटर में टाइप कर चुके हैं इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम method hypen with hypen argument dot rb है
मैंने यह फाइल भी rubyprogram फोल्डर में सेव की है
प्रोग्राम को अच्छी तरह देखें
यहाँ हमने एक ऐड नामक मेथड घोषित किया a b मेथड ऐड के आर्गुमेंट हैं
यहाँ a और b वैल्यूज जुड़ती हैं
और सम मेथड कॉल में वापस प्रवेश करता है
एंड end मेथड के अंत को दर्शाता है
यहाँ हम यूजर से इनपुट के लिए पूछ रहे हैं
यूजर a और b की वैल्यूज एंटर करेगा
वैल्यूज क्रमशः वेरिएबल a और b में संचित की जाएँगी
यहाँ हम मेथड add कॉल करते हैं
हम आर्गुमेंट में a और b रखते हैं
एडिशन ऑपरेशन होने के बाद मेथड add का परिणाम c में संचित किया जाता है
यहाँ हम सम प्रिंट करते हैं जो c में संचित है
इस कोड को निष्पादित करें टर्मिनल पर जाएँ
सबसे पहले टर्मिनल क्लियर करें टाइप करें क्लियर और एंटर दबाएं
हम पहले से ही सबडाइरेक्टरी rubyprogram में हैं
पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की दो बार दबाएं
method hypen without hypen arguments dot rb को method hypen with hypen arguments dot rb के साथ बदलें
और enter दबाएं
enter the values of a and b प्रदर्शित होता है
मैं 8 और 9 एंटर करुँगी
टाइप करें 8 और एंटर दबाएं
टाइप करें 9 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट मिलता है
sum of two numbers 8 & 9 is 17
अब मैं ruby मेथड की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताऊँगी
टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम पर वापस आते हैं
कीवर्ड return को डिलीट करें
अब सेव बटन पर क्लिक करें
कोड को निष्पादित करें टर्मिनल पर जाएँ
पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की दबाएं और एंटर दबाएं
प्रदर्शित वैल्यूज a और b एंटर करें
मैं 10 और 15 एंटर करुँगी
10 टाइप करें एंटर दबाएं 15 टाइप करें और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट मिलता है
sum of two numbers 10 & 15 is 25
हम देख सकते हैं कि कीवर्ड return डिलीट करने के बाद भी प्रोग्राम बिना किसी एरर के निष्पादित हुआ है
ऐसा इसलिए है क्योंकि ruby अपने आप से मेथड में संसाधित वैल्यू को return करता है
ruby में मेथड में कीवर्ड return ऑप्शनल होता है
इसके साथ हम स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
अपनी slides पर वापस आते हैं
इसको सरांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
मेथड्स के बारे में
आर्गुमेंट के बिना मेथड्स के लिए रचनाक्रम
और मेथड्स आर्ग्यूमेंट्स के साथ
मेथड से वैल्यू return करना
नियत कार्य के रूप में
मेथड का उपयोग करके और
यूजर से इनपुट लेकर
वर्ग के क्षेत्रफल की गणना के लिए एक प्रोग्राम लिखें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
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
spoken tutorial project team:
स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है
यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए लिंक पर उपलब्ध है
आई आई टी मुंबई से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद